पिक्चर में यहां पर--

है डिजाइनर कप बहोत सुंदर है।

इस फोटो में देख--

इस फोटो में नजर आ रहा है।

ये बहोत बड़ा गार्डन है और यहां--